हमें फॉरेन की इमेज दिखाई दे रही है।

अन्दर जाने का थोड़ा सा रास्ता भी बना हुआ है। वहाँ एक पर्सन नीचे बैठ के धीरे से जा रहे हैं वहॉं।

बोहोत बड़ा गेट है। बोहोत ही सुन्दर दिखाई दे रहा है।

पाइप जैसा दिखाई दे रहा है चिमनी लाइक सिटी की इमेज है ये।

यहाँ पे व्हाइट कलर की बिल्डिंग दिखाई दे रही है। कॉलेज के रुम्स टाइप की लाइन से बनी हुई बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

किसान का घर जैसा दिखाई दे रहा है। अनाज रखने के लिए बनाए हुए है। पीछे वृक्ष भी लगे हुए हैं। साफ़ सु --

एक पर्सन बैठे हुए हैं। उनकी तरफ देख रहे हैं। यहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स भी रखे हुए हैं लाइन से।

खड़े हुए हैं। यहाँ पे स्पीच भी चल रहा है। साइड में एक महिला खड़ी हुई है।

सामने की तरफ बैंक के रूल्स वगेरह दिखे हुए हैं सभी।

चारों तरफ से एक जाली से ठीक किया गया है। अन्दर एक लाइट जल रही है। बोत ही सुन्दर दिखाई दे रहा है दूर से देखने में एकदम डाॅल की तरह। बोहत ही सुन्दर दिखाई दे रहा है।

यहाँ पे कार दिखाई दे रही है। कार को ओपन किया गया है। कार की सर्विसिंग कर रहे एक पर्सन दिखाई दे रहे हैं। कार की सर्विसिंग कर रहे हैं।

वाओ एक तो एकदम ब्लू कलर का सी दिखाई दे रहा है। ब्लू कलर का सी और ब्लू कलर का आसमान और पीछे की साइड में पहाड़ी दिखाई दे रहा है बहुत ही --

यहाँ पर आगे की साइड में कोई फोर्ड जैसा दिखाई दे रहा है या कोई बिल्डिंग जैसी कोई कॉलेज जैसी --

हेड वाली ऊपर भी ऐसा फ्लो जैसा रखा --

बोहत ही अँधेरा दिखाई दे रहा यहाँ पे हमें।

तीज की बोहत बड़ी पूजा चल रही है यहाँ पे । पूजा कर रही हैं महिलाएँ। लोग दिखाई दे रहे हैं। गर्ल्स खड़ी हु --

सामने पिंक कलर की इमेज दिखाई दे रही है। रात्रि के टाइम की इमेज है ये। उपर पे से छोटे-छोटे झंडे भी लगे --